कपड़े पहने हुए हैं और बगल से बगल से एक बड़ा सा लंबा सा हरे कलर का पेड़ दिखाई दे रहा है।

लगा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ यहाँ पर स्टील की रेलिंग दिखाई दे रही है कुछ सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है जो बिल्डिंग है उसका कलर --

यह बुद्ध भगवान की मूर्ति है जिनका रंग काले कलर का हो काले कलर की पॉलिश दिखाई--

छोटी सी दुकान है जहां पे पान मसाला दिखाई दे रहे हैं कुछ चिप्स के कुरकुरे के पैकेट भी दिखाई दे रहे हैं कुछ--

सफेद सफेद रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसके नीचे कई की कई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं जिनका रंग कुछ काला कलर भी दिखाई दे रहा है नीचे पट्टी में और कुछ--

अ शर्ट पहन रखी काले कलर का पेंट पहन रखा है एक टेबल रखी हुई जिस पे जिस पे नीले कलर की एक सीसी रखी हुई है।

झोला भी दिखाई दे रहा है नीचे नीचे नीले कलर की बाल्टी दिखाई दे रही है जिसमें पूरा कचड़ा भरा हुआ दिखाई दे--

उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आसमान एकदम धुंधला हुआ सा दिखाई दे रहा है।

एक घर जो ईंटों से बना हुआ दिखाई दिखाई दे रहा है बगल में हरे कलर के और नारंगी रंग के--

दे दे रही हूं खिली हुई धूप भी दिखाई दे रही है।